मुझे यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि यहां पर इतना अच्छा--

मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहां सेंटर मिलता है और--

जहां पर सभी प्रकार के हेयर कट और दाढ़ी बनाई जाती है मुझे यह दुकान बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही--

यहां बच्चों का सारा सामान मिलता है और बच्चों को यहां पर कराटे भी सिखाए जाते--